यह चर्च काफी बड़ा है।

ऊपर बहुत से बच्चे लड़के एवम लड़कियाँ पढ़ने आती है। यह पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आती है।

सैलून है यह सैलून काफी छोटी है इस सैलून में एक सी.पी.यू. लगाई गए है यहां पर एक कुर्सी भी है।